एक कार्यालय दिख रहा है जिसका एक बड़ा सारा मैदान है। कार्यालय का रंग हल्का हरा है। काफी सारी खिड़कियाँ हैं लोहे की।

ये चित्र एक मकान दिख रहा है जो सफेद रंग का पुता है।

यह चित्र एक मेडिकल हॉल का दिख रहा है जहां काफी सारी दवाए रखी हुई है नीले रंग का एक बोर्ड लगा हुआ है वहां ऊपर की ओर कांच दिख रहे --

ये चित्र एक बिल्डिंग का है जो चार मंजिला है जिनके सामने की ओर तार लटक रहे है पीछे पेड़ लगे हुए है।